ये अलग अलग हिसाब से टंगी हुई है कुछ लोग लड़के लेते हुए कड़े हुए चेक करते हुए जरकिनों को पैंट शर्ट ओं कों दिखाई दे रहे।

यहा तालाब दिखायी दे रहा है साईट में काच लगा हुवा है और एक साईट में किनारो पर एक किनारे पर हरी भरी हरियाली पेड़ है लगे --

यहाँ बेंचो पर सामान रखा हुवा है रैक पर रखा हुआ क्रीम दिखाई दे रही।

इमेज मे हथाई जल ही जलहरा व दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है समुद्र का किनारा आ दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत नीला कच्चा पानी पानी यथाई गेरा बरा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझमें यहाँ तेल की शीशी रखी हुई पाउडर के रखी हुई यह और भी अलग अलग प्रकार के पैकेट है।

बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है यह सोफा रेड कलर और चांदी कलर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

हमे यहां गाय चारा चरते हुए ब्लॅक कलर की दिखाई दे रही ईसके स्किन दिखाई दे रहे कान बड़े बड़े दिखाई दे रहे आखे दिखाई दे रही लगा हुआ दिखाई दे रहा है।